ओर यहाँ पे बोहोत ही पूजा हो रही हैं।

यह एक माल जहा पर जाम लगा हुआ है और --

यह आदमी टी.वी. में न्यू न्यूज़ दे ख रहा है और काफी सारे यहाँ पे सलून में सामान रखे हुये हैं और कुछ --

और य यहाँ पे एक बोरा में कुछ रखा हुआ है और एक आदमी जो ग्रे कलर का टी-शर्ट ब्लैक कलर का पेंट पे पहन के जा रहे हैं और बिल्लोरे का गेट खु --